तस्वीर में एक इमारत का दृश्य दिखायी दे रहा है।

कुर्सी का रंग सफेद है और उसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ --

सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे--

व्यक्ति का कमीज का रंग और पैंट का रंग सफेद है।

विभिन्न विभिन्न प्रकारों के समाने रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ रैके बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

चापाकल भी दिखाई दे रहा है।

इसका पानी हरा है।

पीला पत्थर पे बैठी हुई है।

एक बच्चा उनके गोद में भी बैठा हुआ है।

जिसका रंग नीला और सफेद है।

सूरज का किरण चमक भी रहा है।

दुकान का फर्श साफ एवं स्वच्छ दिखाई दे रहा है।

यहां दो पेट्रोल पंप बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और फर्श ईट की बनी हुई दिखाई दे रही है।

किनारे में पत्थर का दीवार भी दिखाई दे रहा है।

पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पत्थरे पे सूखे सूखे पत्ते भी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आसमान से सूरज का किरन भी आ रहा है।

उसके बगल में बहोत सारे पेडे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने कुछ ऑटो भी दिखाई दे --

कुछ इमारते भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान साफ एवं नीला दिखाई दे रा--

का दीवार का रंग हल्का पी--

कई खिड़कीये एवं दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

जहां बहोत पानी है पानी का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

पीछे बहोत सारे पेड़े भी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे व्यक्ति भी खड़े हैं।

महिला भी दिखाई दे रही हैं जो खड़ी हैं।

उसके बोर्ड पे एक्सिस बैंक का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा--

इसमें बहुत सारी खिड़कीये एवं दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारी सिलाई मशीन भी रखी हुई है।

जहा बहोत सारे रैके बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान की फर्श टाइल्स की बनी हुई है।

ये दुकान की दृश्य दिखाई दे रही है।

कुर्सी भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

ये में एक व्यक्ति का कमीज का रंग सफेद है और एक व्यक्ति का गुलाबी --

यह तस्वीर में एक सब्जी मंडी की दुकान की दृश्य दिखाई दे रही है।

में एक रेलवे फाटक की दृश्य दिखाई दे रही है।

आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

जमीन पे छोटे छोटे घासें भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

एक स्प्रे बॉटल रखा हुआ भी है।

इसपे ओप्पो लिखा हुआ है वह कांच की बनी हुई है।

जिसका नाम गौरीस इलेक्ट्रिकल्स है।

जिसमे में विभिन्न विभिन्न प्रकारों के सामाने रखे हुए हैं।

विभिन्न विभिन्न प्रकारों के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

पर बहोत सारी दुकाने भी दिखाई दे रही है।

लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान साफ एवं नीला दिखाई दे रहा है।

विभिन्न प्रकारों के चॉकलेटे रखे हुए दिखाई दे--

काउंटर पे कुछ समाने भी रखे हुए हैं।

काफी दरवाजे और खिड़की भी दिखाई दे रही है।